ए दूर कुछ अलग-अलग चीजों की शॉप भी नजर आ रही है वहाँं एक कपड़ों की शॉप भी है और एक चूड़ियों की शॉप नजर आ रही है।

शीशे के सामने डांस कर रहे है और एक आदमी --

यहाँ पर एक साइकिल खड़ी हुई है। यहाँ मैदान में काफी सारे बच्चे बैठे नज़र आ रहे है यहाँ दो एक घर भी नज़र आ रहा है।

फ्रूट शॉप दिखाई दे रही है उसमे बहुत सारे फ्रूट रखे हुए दिखाई दे रहे हैं |